इनका कलर रेड हैएक गदा है जिसका कलर गोल्डन है।

कलश रखी गई है बहुत सारे फल फूल रखे गए हैं।

इस टाइल्स का कलर व्हाइट है।

एक वॉश बेसिन लगाई गई है।

वहां पे बहुत सेव अनार और केले लटकाए गए हैं।

बहुत सारी लाइटें जली हुई है।

एक आदमी है जिसने अपने मुँह पर गमछा बांध के खड़ा है उसने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है।

सारे किताब रखे गए हैं जो कि रेखे पर हैं यहां पर लाइट चली हुई है।

यह एक प्लेन का दृश्य है यह प्लेन का कलर व्हाइट है।

उसके आगे पर खिड़कियां लगाई गई है जो की ग्लास की है।

इस बिल्डिंग के ऊपर एक बैनर लगाया गया हैजिस पर रेड कलर से दिखाया गया है गौरी द सारी --

अपने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है।

इ दुकान के ऊपर बैनर लगाया गया है जिस पर लिखा गया है पहनावा।

एक आदमी खड़ा है जिसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

दो हेडलाइट है इसके पीछे बहुत सारी कार मोटरसाइकिलस रखी गई है।

इसके साइड मे एक रोड है जिसके साइड से एक बैनर लगा गया है ।

यह एक रोड का दृश्य है। इस रोड के साइड में एक मन्दिर है जिसके ऊपर गुंबज लगा हुआ हैं ।

कुछ रैक खे ऊपर र चांदी के मूर्तियां बनाई गई है। जिसमें से एक साईं बाबा की हैं कुछ भगवान की हैं।

बिल्डिंग का कलर पीला है इसके ऊपर बहुत सी लाइटें जली हुई हैं।

एक लड़का हैजिसने ब्राउन कलर का जैकेट पहना हुआ है और ब्लू जींस पहनी हुई है।

दो बाल्टी दिखाई दे रहे हैं जिसका कलर व्हाइट है मशीन का कलर भी व्हाइट है।

कुछ पेड़ हरे हैं कुछ पेड़ के पत्तियां लाल हो चुकी है।